इस चित्र में आपको एक नदी का किनारा नजर आ रहा होगा और किनारे पर कई सारे नाव उल्टे पड़े हुए हैं।

और खुली जगह है यहाँ पे शांत वातावरण है और यहाँ बहोत ही बड़ी जगह है।

और दो आराम चेयर भी यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ से फूलों से भी सजावट की गई है और कुछ हरियाली भी रखी --

चित्र में आपको एक जगह खुदाई का काम चल रहा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ खुदाई चल रही है।